दृश्य दिखाई दे रहा है एक रोड है रोड --

दोनो तरफ पेड़ लगे हुए हुए है बड़े बड़े से हरीयालीसी --

स्टेज बना हुआ है प्रोग्राम के लिए यहाँ कुछ लड़कीया ऑरेंज ड्रेस पेहेन के --

ग्राउंड है ग्राउंड में एक बड़े से --

कार्यालय यहाँ ऑफिस की बिल्डिंग है इसके पास में लाइट का खंबा लगा हुआ है पास में ठेला खड़ा हुआ है।

बड़े सुन्दर सी झांकी है इसमें देवियाँ बेठी हुई है।

योगा कर रही है सारी महिलाए यहाँ पर एक योगा क्लास सुन्दर सी एक योगा क्लास --

यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ब्लू जीन्स और ब्लू जैकेट पहने हुए चश्मा लगाया हुए।